अ उसमें कुछ गुलाब के फूल दिख रहे हैं जो लाल रंग के है गुलाबी रंग के है और पीले रंग के भी है।

और घर के बाहर अ गमले लगे हुए हैं।

एक औरत नजर आ रही है जिसमें लाल रंग की साड़ी पहन रखी है एक आदमी नजर आ रहा है जिसने बैग लटकाया हुआ--

गोल्डन कलर का है इन मशीनों के बराबर में एक दीपक नजर रख रहा है जो चॉकलेट कलर का है।

इंटीरियर और प्लैनर लिखा है।

उसमें पेन स्टैंड रखा हैं जो ब्राउन रंग का हैं।

कुछ बुक्स नज़र आ रही हैं बुक सेल्फ भी नज़र आ रहा--

एक लड़का नजर आ रहा है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

जो लाल रंग के कपड़े पेहने हैं उसका हाथ एक उपर की तरफ--

एक गाय नजर आ रही है जो सिल्वर कलर की है और जो इसमें इटो का फरश है वो लाल रंग का--

में एक स्मारक नजर आ रहा है जिसमें कुछ लोग अंदर जा रहे हैं।

इसलिए कुछ अं एक फ्रेंम में कुछ बड़ा सा फूल नजर आ रहा है जो--

एक आदमी लकड़ी डाल रहा है।